यहाँ एक आश्रम है। यहाँ बहुत सारे संत लोग योगा करने आये है ध्यान करने आये है।

नए-नए हेयर स्टाइल बनवाने आते है यहाँ टीवी लगे हुए है पंखा लगा हुआ है यहाँ पर नाई काम कर रहा है बाल काट रहा है एक इंसान का बहुत सारे चेयर्स भी लगे हुए है।

इस चर्च तो को देख करके ऐसा लग रहा की यहाँ पर किसी कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है जिसमे भोजन बनाने की तैयारी की जा रही है एक आदमी कढ़ाई मे कुछ पकवान बना रहा है और दो आदमी--

यह एक पुस्तक भण्डार है जिसका नाम है विजय यहाँ लोग पुस्तके खरीदने के लिए आते है बाहर मे कैरम लगा हुआ--